--और छोटे-छोटे बच्चे अपने मतलब कपड़े पे किसी चीज़ पर नक चिपका रहे है।

मन्दिर म म बहुत अच्छे से डेकोरेशन हैं फ्लार से झंडे से भी हैं कुछ लोग नजर आ रहे हैं कुछ ऑन्टी भी हैं छत पर से लोग देख रहे हैं ये नजारा बहुत बड़ी बिल्डिंग हैं वो।

वहा पे जहा बसेस खड़ी है और ऑटो भी निकाल रहा है बेटरी वाला|

कुछ-कुछ दुकाने भी है नीचे शटर पे भी लिखा है बैंक ऑफ इंडिया उसका साइन भी बना है ऑटो मे अंकल बैठे हुए है उन बाइक से मतलब लोगों कुछ लोग बैठे है बाइक पे--

--और एक साइड बहुत सारी हरियाली-हरियाली हो रही है और ये ब्लू कलर का बैग टाँगे है अंकल ।

इनके पीछे बहुत बड़ी इमारत बनी है एक इसके ऊपर गुम्बद भी लगा है ये अंकल बिल्कुल स्ट्रेट खड़े है दोनों हाथ खड़े कर के।

प्रवती के नाम से बहुत सारे बुक्स जमा है दो अंकल बैठे हुए हैं अंदर भी दुकान है लेकिन दुकान के बहार बैठे। उस अंकल उन अंकल के पीछे दुकान खुली उन अंकल के पीछे दुकान बंद है।

न कहीं का बैंक का वो भी बना हुआ है पर्दे डले हैं मीटर लगा है छोटे -छोटे से पाइप नजर आने लगे--

उनकी इमेज है पार्लर की जहाँ से दिख रही है मीटर नज़र आ रहा है।

और चीयर रखी है छोटी-छोटी सी अम बोटल्स रखी है बड़ी-बड़ी बोटल रखी है बैकस करने का सामान रखा है हर तरीके के क्रीमस रखे हुए है अंकल सेल्फ़ी ले रहें है आईने में--

बहुत सारी औरते एक साथ जमा है सभी औरते साड़ी पेहनी है अम बहुत बड़े-बड़े टीके लगाई है नाक से लेके--

एक आंटी भी नजर आ रही हैऔर ये जो कुर्सियों का कवर है. वो गुलाबी से कवर है गुलाबी टेबल्स भी बिछी हैं।